इस तस्वीर में मुझे दो लोग दिखाई दे रहे हैं।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

इस तसवीर में मुझे कुछ बोर्ड दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।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

स तस्वीर में मुझे एक हवेली दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीग में मुझे एक बाइक दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं।